यहां पर एक चीज हैं इसमे--

बहोत सारे स्टेच्यू दिख रहे--

यहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है।

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस पिक्चर में हमें--

बहोत सारी गाड़ी है और यहां--

बड़ा गेमिंग साउंड है।

और यहां पर कुछ लोग खड़े है जहां--